बाहर के वॉल पे डू नॉट स्पीट लिखा हुआ है।

इस छवि में दो गाड़ियां दिख रही हैं।

हॉल के अंदर और बाहर काफी भीड़ लगी हुई है।

एंट्रेंस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हैलाकंदी लिखा हुआ है।

बोर्ड में सफेद रंग से के आर डी कॉलेज आफ एडोकेशन लिखा है।

इस छवि में हमें एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है।

पीछे एक घर दिख रहा है।

राइट साइड में एक बड़ा सा गोडाउन है।

दुकान के सीलिंग पे रंग बिरंगे लाइट लगे हुए हैं।

इस छवि में हमें कई बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

सीलिंग पर लाइट लगी हुई है।

जिम के सीलिंग पे काफी सारे लाइट लगे हुए हैं।

सभी के बीच एक पियानो रखा हुआ है।

कुछ रंग बिरंगे मटके ऊपर लटके हुए है।

इस छवि में हमें एक नदी दिख रही है।

टेबल के सामने एक चेयर रखा हुआ है।

छवि के राइट साइड एक व्यक्ति की मूर्ति लगी हुई है।

इस छवि में एक मंदिर दिख रहा है।

मंदिर का रंग सफेद है।

सामने एक टेबल और कुछ चेयर देख रहे हैं।

सीलिंग पर एक लाइट लगा हुआ है।

नदी के दूसरे तरफ काफी सारे पेड़ पौधे हैं।

टेबल में मॉनिटर और सी पी यू रखा हुआ है।

नदी के इस किनारे एक पेड़ सुखा हुआ है।

पीछे के तरफ एक घर दिख रहा है।